बाजू साइड में एक उसके पेरेंट्स हैं और लड़के पकड़ करके--

और एक सामने एक आदमी है मोबाइल में बात कर रहा है।

यहां पर पराठा है प्लेट में रखे हैं दो तीन अ पराठे प्लेट में और वो काफी अ अच्छे है।

पीछे साइड में भी नहीं है।